मुझे इस फोटो में व्यक्ति दिखाई दे रहा--

मुझे इस फोटो पर पर्दा दिखाई दे रहा है मुझे इस फोटो में चे--

मुझे इस फोटो पर मगरमच्छ दिखाई दे रहा है मुझे इस फोटो में--

मुझे इस फोटो में घर दिखाई दे रहा है।